यहाँ पर हरियाली है और पेड़ पौधे लगे हुए है।

यहाँ पर बाजु में दीवारों के बाजु में है हरियाली भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है साईं कृपा होमीओपेथिक ।

दीवारों की दूसरी साइड पेड़-पोधे लगे हुए दिखाई दे रहे है और एक बारू का ढेर दिखाई दे रहा है।

दोनों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है और सामने है सूरज ह दिखाई दे रहा है जिस--

एक बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ कुछ पेड़--

तीन मशीने दिखाई दे रही है और एक आदमी--

यहाँ पर एक पहाड़ है। पहाड़ के बीच में कुछ पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

टेबल यहाँ पर रखी हुई दिखाई दे रही है. दरवाजा सफ़ेद कलर का है ।